एक आदमी ने रेड कलर की टी-शर्ट और ब्लैक कलर की लोअर पहनी है।

पेंट में तुलसी मोटर्स लिखा हुआ है।

एक आदमी ने चश्मा पहना हुआ है। एक आदमी ने व्हाइट --

जैन धर्मशाला ब्लू कलर के बैनर में लिक्खा हुआ है सामने कुछ गाडियां नजर आ रयीं है।

स्काईब्लू और ब्लू कलर की पट्टी भी टी-शर्ट पहनी है।

बहुत बड़ा हॉल है। जिसमें लाइटों की डेकोरेशन हो रही है। वहां पर कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुये हैं।

बस के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जिनके हाथों में सामान है कुछ बाइक्स खड़ी हुई है सामने एक औरत खड़ी हुई है।

साइड में एक और एक दुकान है जिसका बैनर नजर आ रहा है।